जो पीले रंग की एक टेंपो खड़ी हुई है सफेद रंग के नीचे पानी भरा हुआ है| ऊपर साइड से तार गई हुई है जो काले रंग की तार है सफेद नीले रंग की आसमान है।

ने एक बड़ा सा एक ठेला खड़ा है जो नीले रंग की है। दो चक्के लगे हुए हैं। एक बड़ा-सा जो नीले रंग की बाइक रखी गयी है नीले रंग की काले रंग की सीट है। इस बगल में एक ठेला खड़ा हुआ है। ऊपर के साइड में पोस्टर लगाए गये हैं लाल रंग के।

बड़ा सा बिल्डिंग है जो हरे रंग का है सफेद रंग का दीवाल है चार परदे खड़े हुए हैं। पीले रंग की वो लाइट लगी हुई है। ऊपर के साइड पे लाइटे लगाई गयी है जो की कत्थे रंग की और हरे रंग की लाइट हैं। सफेद रंग की लाइट जल रही है काले रंग का आसमान है।

ऊ पीछे के साइड पे त्रिपाल है जो चार खिड़कियाँ हैं रोशनदान लगाए गए हैं ।

जिसमे नीले रंग की कांच लगी हुई है सफेद रंग के कांच लगे गए हैदीवाल का रंग नीला है।

पर्दा लगी हुई है। लाल रंग की पीले रंग के बगल में दीवाल है। सफेद रंग का नीचे पाइप लगी हुई है सफेद रंग की सैंडल रखी गई हैं| बगल में बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है। जो हरे रंग को पीले रंग की है काले रंग से और लाल रंग से लिखी गई है।

--दुकान हैं जो काफी बड़ी दुकान हैं एक बाइक खड़े हुए काले रंग की अंदर से एक आदमी आ रहा हुआ है ऊपर के साइड में काले रंग के तार लगे हुए हैं एक लाइट लगी हुई है खंबे खड़े हुए हैं काले रंग भरे रंग के।

बीच के साइड पे बस के कुछ आदमी चल रहे हैं जो काले रंग के कपड़े पहने हुए हैं। प सामने बड़ा सा खम्भा गड़ा हुआ है जिसके ऊपर पोस्टर लगी हुई है।

चप्पल उतरी हुई है सीढ़ी दी गई है अंदर के साइड पे जो घर है सफेद रंग --

पीछे साइड पे चार कुर्सी हैं काले रंग का एक टेबुल रखा गया है सफेद रंग का अगल बगल दीवालें हैं सफेद रंग की ऊपर की साइड पे लाइटें जल रही हैं सफेद रंग की और फर्श किया गया है।

जो भूरे रंग का है ऊपर के साइड पे सफ़ेद रंग के माले लगे हए हैं लाल रंग के और पीले रंग के फुल लगे हुए है हरे रंग के पत्तियाँ अगल-बगल दीवाल है जो सफ़ेद रंग की ऊपर के साइड पे सफ़ेद रंग की लाइट जल रही --